नमस्कार diode rectifier और transistor पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न अध्ययन करेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ: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
सबसे पहले एक pn junction diode परिभाषित करते हैं
pn junction diode:
हम pn junction diode के half wave rectifier की तरह कार्य करने को दिखायेंगे
इस परिक्षण में हम निम्न करेंगे:
अब मैं circuit connections समझाऊँगी
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर a1 पर click करें और ch1 तक खींचें a1 ch1 पर निर्दिष्ट किया गया है
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें a2 ch2 पर निर्दिष्ट किया गया है
waves को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ दो sine waves बनती हैं
काला वक्र वास्तविक sine wave है
लाल वक्र rectified संशोधित sine wave है लाल वक्र का ऋणात्मक भाग पूरी तरह से हट गया है क्यौंकि यह rectified यानि संशोधित wave है
diode के threshold voltage तक पहुँचने के बाद धनात्मक भाग शुरू होता है forward bias में ac signal dc signal में बदल जाता है
ch1 पर click करें और fit तक खींचें
window के दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values कोदेखें
diode connection पलटने पर reverse bias में ac signal dc signal में बदल जाता है
हम 10uf micro farad संधारित्र capacitor उपयोग करके sine wave को filter करेंगे उसी connection में 1k प्रतिरोधक को 10uf संधारित्र से बदलें
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखें
plot window पर हम देख सकते हैं कि rectified sine wave filtered होती है यहाँ ac component dc में ripple कहलाता है
अब हम pn junction diode और leds के diode iv characteristics दिखायेंगे
मैं circuit connections समझाऊँगी pvs 1k प्रतिरोधक के द्वारा in1 से जोड़ा गया है
in1 pn junction diode के द्वारा gnd से जोड़ा गया है
यह circuit diagram है
plot window पर परिणाम देखें
plot window पर experiments button पर click करें diode iv चुनें
eyes: iv characteristics और schematic windows खुलती हैं schematic windows circuit diagram दिखाती है
eyes: iv characteristics window पर start button पर click करें
शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही voltage 06 volts तक बढ़ती है
fit button पर click करें
diode equation और ideality factor दिखते हैं diode का ideality factor 1 और 2 के बीच परिवर्तित होता है
हम circuit में एकएक ककरे diode को लाल हरी और सफ़ेद leds से बदलेंगे
कृपया ध्यान दें led केवल एक ही दिशा में चमकती है यदि यह नहीं चमके तो दिशा पलटे और दोबारा connect करें
सबसे पहले circuit में लाल led connect करते हैं यह circuit diagram है
plot window पर experiments button पर click करें diode iv चुनें
eyes: iv characteristics window पर start button पर click करें diode iv वक्र में शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही वोल्टेज 17 volts तक बढ़ती है
अब circuit में हरी led connect करते हैं
plot window पर experiments button पर click करें diode iv चुनें
eyes: iv characteristics window पर start button पर click करें
diode iv वक्र में शुरुआत में विद्युत धारा नियत रहती है लेकिन बढ़ती है जैसे ही voltage बढ़कर 18 volts हो जाती है यहाँ value थोड़ी सी बदल सकती है
अब circuit में सफ़ेद led connect करते हैं
plot window पर experiments button पर click करें diode iv चुनें
eyes: iv characteristics window पर start button पर click करें
अब हम 180 degree out of phase sine waves दिखायेंगे
हम यह amplifier आवर्धक उपयोग करके sine के output को पलटकर कर सकते हैं यहाँ amplification यानि आवर्धन के लिए हम 51k प्रतिरोधक resistor उपयोग कर रहे हैं
मैं circuit connections समझाऊँगी
a1 sine से जोड़ा गया है
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखें
plot window पर a1 पर click करें और ch1 तक खींचें a1 ch1 पर निर्दिष्ट किया जाता है
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें a2 ch2 पर निर्दिष्ट किया जाता है
waves को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ दो sine waves जो 180 degree से फेज़ में अलग हैं उत्पन्न होती हैं
ch1 पर click करें और fit तक खींचें ch2 पर click करें और fit तक खींचें
दायीं तरफ voltage और आवृत्ति की values दिखती हैं
ch1 पर right click करें window में नीचे voltage आवृत्ति और फेज़ shift की values दिखती हैं
अब हम transistor ce collector emitter characteristic वक्र plot करेंगे
कृपया 2n2222 npn transistor उपयोग करें transistor के तारों को इस प्रकार जोड़ें जिससे transistor expeyes kit से अच्छी तरह से जुड़ सके
मैं circuit connections समझाऊँगी
pvs 1k प्रतिरोधक उपयोग करके collector से जोड़ा गया है
emitter gnd ground से जोड़ा गया है
अब plot window पर परिणाम देखें
plot window पर set pvs को 3 volts करें आंतरिक voltage देने के लिए pvs को 3 volts पर set किया गया है
experiments button पर click करें और transistor ce चुनें
eyes junior: transistor ce characteristics और schematic windows खुलती हैं
eyes junior: transistor ce characteristics window पर base voltage को 1 volt करें
start button पर click करें collector current बढ़ती है और नियत हो जाती है
base voltage को 2 volts करें और start button पर click करें collector current 15 ma है
base current 7ua micro ampere है
base voltage को 3v करें और start button click करें collector current 27ma है
base current 12ua micro ampere है
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न अध्ययन किया:
एक नियत कार्य में प्रकाश की तीव्रता और स्रोत से इसका परिवर्तन मापें यह सर्किट डायग्राम है आउटपुट इस प्रकार दिखना चाहिए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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है
आई आई बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद